के अन्दर लाल कलर है और काम हो रहा है।

चाय का पोस्टर हैं बर्गर का पोस्टर हैं और एक ड ट डस्टबिन रखा हुआ है।

यह एक नदी है नदी में पानी भरा हुआ है साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे लग रहे हैं।

फोटो क्लिक करवा रहे तीनो अ इस्माइल दे रहे हें।

बस या ट्रक खड़ा है बाइक खड़ी है।

वाइट कलर की बिल्डिंग है उसमें ग्रे कलर की पैंट हो रखी हैं।

और एक बंदा सामान खरीद रहा है ओम नमः शिवाय का साइन बना हुआ है।

एक मैकेनिक की दुकान है यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है बाइक रिपेयरिंग कर रहा है।